ये एक होस्पिटल का वोर्ड है यहाँ पे बहोत बड़े बड़े ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन रखे हैं।

और कर्टन्स का किया गया है आसपास काफी सारे लोग हैं यहाँ पे बहोत सारी चेयर्स लगी लगी हैं जिसपे काफी सारे लोग बेठे हुए हैं।

यहाँ एक बॉय बैठ के कुछ मशीने और लोहे के टूल्स को एक कपड़े से साफ कर रहे हैं आसपास काफी लोहे का समान और बिखरा हुआ सामान भी पड़ा हुआ है।

नीचे बहोत सारे पत्थर भी बिखरे हुए हैं यहाँ एक बहोत बड़ा ग्रीन कलर का ट्रक भी खड़ा हुआ है।

ये एक मैकेनिक की शॉप है यहाँ एक ब्लैक कलर की कार पे डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रहा है निचे की ओर कुछ पत्थर सीमेंट्स वगेरा पड़े रखा हुआ है यहाँ एक मैकेनिक कार में वर्क कर रहा है।

ये यहाँ पर एक स्कूल का फंक्शन चल रहा है इस स्कूल का नाम है लक्ष्य ए लक्ष्य इंटरनेशनल अकादमी अ स्कूल विथ ए लेटेस्ट स्टैण्डर्ड ।